इस इमेज में सामने स्कूल के बच्चे बैठे दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में सामने एक सड़क दिखाई दे रही है जहां पर ऑटो रिक्शा चल रही है।

तस्वीर भी लगी नजर आ रही है।

और कुछ मशीनें भी नजर आ रही हैं।

इस इमेज में सामने एक बंगला दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में सामने एक पुस्तकालय दिखाई दे रहा है।

यहां पर दो व्यक्ति खड़े नजर आ रहे हैं।

और एक बाइक भी खड़ी दिखाई दे रही है।

और कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है।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

और एक खंभा भी नजर आ रहा है।

और कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

और सामने कुछ लोग भी नज़र आ रहे है।

और यहां पर लाइटें भी जलती नजर आ रही हैं।

इस इमेज में सामने एक पार्क दिखाई दे रहा है।

घर भी दिखाई दे रहे हैं।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

और कुछ लोग भी घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं।